और यहां चूड़ी कंगन मालाएं बिक रही हैं।

इस चित्र में हमें बाजार रोड दिखाई दे रहा है।

यहां लोहे का सामान भी रखा हुआ है।

इस चित्र में हमें मिस्त्री की दुकान दिखाई दे रही है।

और नई भी बिक रही हैं केबिल भी दिखाई दे रही हैं।

एक कुर्सी भी धरी हुई है।

इसमें बहोत सारी चीज़ें बना रखी है बच्चों ने।

यह मिट्टी के ऊपर बहुत सारे पड़े हुए हैं।

वहां पर नीचे बहोत ही सारी दुकानें हैं।

हा पीछे चेयर भी रखी हुई है।

इसमें हमको खाद बीजों की दुकान दिखाई दे रही है।

ऊपर पंखे भी लगे हुए है।

इसमें लाल सॉस भी दिखाई दे रही है और चम्मच भी रखी हुई है।

यह काले रंग की ट्रे में रखा हुआ है।

चित्र में हमें परचून की दुकान दिख रही है।

बच्चे भी हैं और रात हो रही है।

ये एक मैरिज हॉल है।

ये निंजा तीन सौ का शोरूम है।

इसमे हमको कुछ मशीन दिखाई दे रही है।

यहाँ पर सवारी वाली रिक्शा भी रही--

कलोरो कि बाल्टी भी धरी हुई है।

ऐसे बैठे हुए भी है खड़े भी है।

साधु योगा कर रहे हैं।